पीछे प्लस के साइन पर जीजस की मूर्ति रखी है।

यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है।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

रेस्टोरेंट में काफी सारे बल्ब लगे हुए हैं।

सामने बहुत सारे क्रीम रोल रखे हुए हैं।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

जिसके बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

और पीछे हमें कुछ सफेद डब्बे दिख रहे हैं।

खजूर के पेड़ नजर आ रहे हैं।

दुकान पर कई सारा सामान रखा हुआ है।

पेड़ पर काफी सारी चूड़ियां बैठी हुई हैं।

यहां काफी सारी लाइटें लगी हुई हैं।

एक औरत ने लाल साड़ी बांधी है।

इस चित्र में हमें एक फेशियल की किट दिखाई दे रही है।

कुछ घास दिखाई दे रही है।

कपड़े पहने है लाल रंग की शर्ट --

इस चित्र में हमें एक द्वार दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक पार्क दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक जगह दिखाई दे रही है।

एक आदमी खड़ा है जिसने सफेद शर्ट पहनी है।

एक गाड़ी खड़ी है जिसका रंग लाल है।

पीछे हमें एक पहाड़ नजर आ रहा है।

यहाँ पर कॉम्पिटिशन चल रहा है।

यहाँ पर चार कुर्सियाँ भी रखी हैं ।

पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक टीन डली हुई है जिस पर नीले रंग का पुताई है।